हमें कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं।

एक हमे स्विच बोर्ड दिखाई दे रहा है और एक खिड़की दिख रही--

उस फोटो में हमें एक काले कलर की गाड़ी दिखाई दे रही है और साथ में एक टैंक दिखाई दे रहा है नीले कलर का पानी का टैंक है ये।

हमें यहां पे छोटी छोटी हरे हरे--

बड़े बड़े आदमी भी हैं और हमें कु--

वो स्माइल करके फोटो खींच रहा है इसने लाल रंग की--

हमें एक फ्रिज दिखाई दे रही है साथ में हमें कुछ खाने का सामान दिख रहा है।